चुनाई करते है | जो मिस्त्री बघेरा का काम करते है | जो लेवर काम करती है | जो इससे जीविका चलती है और जो जिसके लिए बनाते जो उसके लिए एक नया घर मिल जाता है तो इससे दोनों घरों को फायदा होता है | इसी तरह एक दूसरे पर निर्भर हो अपना काम करते है|

किसी के घर की गाड़ियाँ --